के बगल मे एक टब भी लगा हुआ नजर आ रहा है।

यह एक लैपटॉप का दृश्य है।

इस प्लेट में चावल दाल सब्जी और पनीर और सलाद भी रखा गया है।

इसके ऊपर एक फैन लगा हुआ है।

में काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी रखा गया।

काफी सारा पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है।

यह एक किताब का दुकान का दृश्य--

जिसमें जाना पहचान पेंटर शिवपूजन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इसमें काफी सारे बाइक खड़े नजर आ रहे--

यहां पे काफी सारा कुरकुरा भी दिखाई दे रहा और चॉकलेटस भी और कुछ बच्चों के चप्पल और जूते भी दिखाई दे --

यह एक घूमने की जगह का दृश्य है।

इसमें एक बड़ी सी गेट दिखाई दे रही है।

इसमें हेयर हैक्स लिखा हुआ नजर आ रहा है।

जो की बहोत सारी लाइट्से लगी हुई है।

जो कि देखने में काफी बड़ा नजर आ रहा है।

के ऊपर एक गुंबद लगा हुआ है जिसका कलर गोल्ड है।

इसके बगल में काफी सारा पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहा है।

और यह दुकान के बाहर काफी सारा बाइक भी लगा हुआ है और एक कार भी खड़ा है।

जिसमें दो फादर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक कार सर्विसिंग का दुकान का दृश्य है जिसमें कार सर्विस किया जाता है।

और यहां पे एक लंबी सी रोड भी बनी हुई है।

यह एक कार रिपेयरिंग का दुकान का दृश्य है।

और दो तकिया रखा हुआ है जिसका कलर उजाला है।

जो की शादी होते हुए नजर आ रहा है।